रहा है यहां सजावट की हुई हैं।

कपड़ों का शोरूम दिखाई दे--

इसके आस पास बहोत सारे पेड़ एवं हरि--

शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन मिलता है।

बच्चों के जूते चप्पल इत्यादि खरीदे जा सकते हैं।